बर्थडे हॉल सजा हुआ है वहाँ पे हैप्पी बर्थ्डै भी लिखा हुआ है कई सारे बैलून लगे हुए--

यहाँ पर एक तालाब है तीन बोटे हैं हरे कलर की लाल कलर सफेद कलर की बहुत सारी बोटे हैं।